नीचे टाइल लगी हुई है ऊपर सफेद कलर की पुट्टी हो रही है।

दो सिलेंडर रखें है दो टंकी दिखाई दे रही है एक नीले कलर की ड्रम भी है और एक जनरे--

ये एक कमरे में डाइनिंग टेबल है।

और एक खड़ी है और एक छोटे बच्चे हैं।

ये एक छोटे बच्चों का स्कूल है।

और बहोत सारी बाइक दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान है जिसके पास एक परचून की दुकान है।

एक बाइक खड़ी है एक एक्टिवा खड़ी है।